एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

एक आद- लड़का खड़ा हुआ है।

डबल बेड पड़ा हुआ है।

ऊपर पंखा लगा हुआ है।

ए_सी भी लग रहा है।

बीच में लोग जा रहे हैं।

दिन का टाइम है बहुत सारे--

ऐसी की मशीन दिख रही है।

ये एक जंगल का सीन है।

तीन कुर्सियां रखी हुई हैं एक सीढ़ी दिख रही है।

यह एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है।

एक आदमी सफाई कर रहा है।

और सामने पीछे लगा हुआ है।

जहां पर लोग बाहर खड़े हुए हैं।

ये एक रोड का सीन है।

बहुत सारे कलर की--

और कंपनी की ड्रेस पहनी हुई है।

फोन का ग्राउंड है बहुत बड़ा--

बड़ा से बड़े पेड़ लगे हुए हैं।